ये पूरा कपड़ा का एथी है जो इसमें बेच रहा है लोग मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एक जीन्स पहन के खड़ा है एक कुर्सी लगाया गया है।

ये घर है जो की बहत अच्छा लग रहा है पूर्णिया का एथी है उम जो की बहुत सुंदर कलर भी हुआ है इधर अगल-बगल पेड़-पौधा भी है ।

ये शादी का समारोह है जो की बहुत अच्छा से सजाया गया है बहुत अच्छा भी लग रहा है देखने में खूबसूरत भी जगह लग रहा है ये।

ये घर है जो कि घर में एक सीढ़ी भी है लंबा चौड़ा और इसमें बहोत ज्यादा सा खिड़की है ढेर सारा --